दवाल का कलर हम लोग वाइट देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ शीशा हुआ लगा हुआ देखा आप देख पा रहे हैं।

इस फोटो के सामने में हम लोग एक व्यक्ति को देख पा रहे--

इनका कलर अं थोड़ा सा पिल येलो सटाइप है कुछ यहाँ पर हम लोग कपड़े --

छोटे छोटे पौधे देख पा रहे हैं बड़ा सा पेड़ देख पा रहे हैं।

साइड में हम लोग एक सीरी का रेलिंग देख पा रहे हैं और एक गेट देख पा रहे हैं।

व्यक्ति को देख पा रहे जिनमें से एक ने सफेद कलर का कुर्ता और सफेद कलर का पेंट पहना हुआ है और एक ने ग्रीन कलर का कुर्ता और सफेद कलर का गले में सफेद गमचा है बैठने के लिए पर हम लोग --

इस फोटो का अंदर हम लोग एक दुकान देख पा रहे हैंजोकि एक कलर का दुकान है।

ग्रीन कलर का है ऑरेंज कलर का है सीलिंग में फैन देख पा --

ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना और वाइट कलर का पेंट पहना और वाइट कलर का जूता पहना और एक ने वाइट कलर का टीशर्ट पहना और ब्लैक कलर का --

एक व्हाइट कलर का है ई गाड़ी के ऊपर हम लोग--

दुकान जैसा बना हुआ देख पा रहे हैं जिसका साइड में मेन्यू लिखा हुआ है।

सामने एक बैनर देख पा रहे जो कि लाल कलर का उस पे लिखा हुआ श्री साईं राम फास्ट फूड

यहां पर कुछ फास्ट फ़ूड का फोटो देख पा रहे हैं कुछ दोस्त सॉस का बॉटल देख पा रहे व्यक्ती को देख पा रहे जो की --

हरे कलर के यहा पर उसका सामने हम लोग एक बैनर लगा हुआ देख पा रहे है जिसमे लिखा हुआ है।

साइड में हम लोग एक सीसीटीवी कैमरा देख पा रहे हैं जो वाइट कलर का है।

में से एक ने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है वाइट कलर का पेंट पहना हुआ है रिशट वाच पहना हुआ है।

इस फोटो के अंदर हम लोग फंक्शन होते हुए देख रहे हैं।

और कुछ ऑरेंज के कपड़ा से ढका हुआ है हम लोग कुछ व्यक्तियों को देख पा रहे हैं जिनमें से एक ने रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ --

इस फोटो का अंदर हम लोग एक स्टूडियो रूम देख पा रहे हैं।

लेयर दिख पा रहे हैं जोकि ब्लैक कलर का है उसके ऊपर हम प्लास्टिक --

लेयर लगा हुआ है सामने में एक मॉनिटर देख पा रहे हैं एक लैपटॉप देख पा रहे हैं एक पियानो देख पा रहे हैं एक प्लास्टिक का कंपनी का बोतल देख पा रहे हैं।

अंदर कुछ व्यक्तियों को देख पा रहे हैं सामने पेट्रोल --

यहां पे एक घोरा देख पा रहे हैं जो कि ब्राउन कलर का उसके ऊपर हम क एक महिला को देख पा रहे हैं जोकि ब्लैक कलर का टी-शर्ट और व्हाइट कलर का --

सामने से एक व्यक्ति को आते हुए देख स्कूटी में आ रहा वाइट कलर का स्कूटी है।

में हम लोग वाइट कलर का टाइल्स बैठा हुआ देख पा रहे हैं जो रेड ग्रीन और ब्लू कलर के प्लास्टिक के चेयर देख पा रहे हैं।

एक टेबल देख पाए जोकि रेड कलर का है सामने में दीवाल --

कुछ हम लोग पेडिग्री देख पा रहे हैं बाँध में गला में हम लोग पट्टा देख पा रहे हैं बहुत सारा कलर का जैसे रेड ग्रीन --

हम लोग कुछ बाइक देख पा रहे हैं एक सिल्वर कलर का देख पा रहे हैं।

एक हम लोग यहां वाशिंग मशीन देख पा रहे हैं जिसका ऊपर हमें--

वाइट का कपड़ा देख कपड़ा के ऊपर कुछ फूल बने हुए हैं।

दिवाल का कलर वाइट देख पा रहे हैंनीचे का फ्लोर का कलर हम लोग वाइट टाइल्स देख रहे हैंकुछ ब्लैक टाइल्स देख रहे हैं।

काउंटर के ऊपर हम लोग एक बोतल देख पा रहे प्लास्टिक का है और--

इस फोटो के सामने हम एक बिल्डिंग देख पा रहे हैं जोकि वाइट कलर का --

बहुत सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं पीछे में एक बड़ा सा पेर दिखाई दे रहा बिल्डिंग दिखाई दे रहा जोकि --

येलो कलर का है सामने हम लोग टेंट बने हुए देख पा रहे हैं जोकि सफेद का कपड़ा से बना हुआ है।

सीलिंग में हम लोग एक फैन देख पा रहे हैं जोकि ब्लैक कलर के सामने पर्दा देख पा रहे हैं जोकि ब्राउन कलर का बना हुआ है।

सामने हम लोग एक स्विच बोर्ड देख पा रहे ऊपर हम लोग देवाल में एक फैन देख सामने--

जो गेट है वो हम लोग काँच का बना हुआ देख पा रहे हैं।

फ्लोर का कलर हम लोग वाइट देख पा रहे हैं या यहाँ पर जो --

लिंक का कलर वाइट देख पा रहे हैं यहाँ पर एक वॉल क्लॉक देख पा रहे हैं जो वाइट कलर का है बहुत सारे सामान देख पा रहे हैं पीला कलर का दीवाल देख पा रहे हैं।